की यहां पर एक बड़ी सी मूर्ति तस्वीर--

कार्डिलस एश्योर्ड यहां पर उनका मोबाइल नंबर है पिचानवें इकतालीस तिराशी जीरो दो सौ बत्तीश पतंजलि।

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

बैनर लगा हुआ है यहां पर--

यहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं यहां पर पीछे की ओर जंगला दिखाया गया है।

पर एक बड़ी सी बिल्डिंग हैं इस बिल्डिंग पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ हैं।

सी_बी_एस_ई लिखा हुआ है और सीनियर सेकेंडरी सकूल मयूरी यहां पर लिखा है।

और यहां एक दो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है।

उसके ऊपर लिखा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यहां पर सुखा कुडा डा--

सी इंटरप्राइजेज और यहां पर एक बड़ा सा लाइट का खंबा बना--

और यहां पर अमरिकन गाये हैं व्हाइट कलर की रेड कलर की।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई है जिसके ऊपर लिखा है जीवन ज्योति नर्सिंग --

सामने यहां पर खड़े हैं। एक ने यहां पर कैप लगाई हुई है।

और यहां पर थोड़ा सा घास भी दिखाया गया।

कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा है। यहां पर टेबल पर बहोत सारे कागज रखे हुए हैं और पीछे इसके अलमारियां भी दिख रही है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि --

इस फोटो में दिखाया है कि यहां पर एक बड़ी सी कंपनी है।

यहां पर बहुत सारी जे_सी_बी यां खड़ी है।

जिसके अंदर है बड़े बड़े डब्बे हैं।